ललका टी-शर्ट वाला उ अदमियां उहे लगे हेय बता रहले हेय सबके।

कुछ पूछ राईल है सवाल और सब बैठ के देख राल है।

एगो मे लगे हेय अभी तुरेते गारलके हन खेते से अलुहा खेते मे हेईये हेय अल्लू।

उन्ने दु-तीन गो मरदनमा खड़ा लगय छे बसे पर चढ़य लय।

और ऐ.टी.एम. से पैसा निकालना बहुत आसान होबे हय पुरा त एकदम पांच मिनट में निकल जाए हय।